बहुत बड़ा बिल्डिंग है वहां पे चार चक्का गाड़ी लगा हुआ है एक उजला में है आदमी सब रोड पर जा रहे हैं आ रहे हैं सोल्डर भी है।

एक बोहोत बड़ा स्विमिंग पुल है। जिसमें लड़का-लड़की सब नहा रहे हैं बच्चे भी है जिसमें बच्चे के हाथ में एक --